एक व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ आगे किए हुए हैं।

अनार है और केले हैं।

दो गेट के जोड़े बने हुए हैं और साइड में भी एक हरे कलर का ही है।

और साइड में बहुत से गद्दे रखे हुए हैं बेड के।

और दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और सामने कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां और टेबल रखी हुई है।

यह एक होटल टाइप का नजर आ रहा है।

वे आयशर कंपनी के ट्रैक्टर हैं।

और बगल में एक ऐ_सी और एक व्हाइट कलर का बलफ बल रहा है।

सामने कुछ मजदूर लोग हैं जो कि अपना अपना कार्य कर रहे हैं।

जिस व्यक्ति ने जेब में हाथ डाला हुआ है उसने ब्लैक कलर का कोट पेहना हुआ है।

दाएं तरफ एक बोतल रखी हुई है।

और साइड में कुछ बेस ट्यूब डिब्बे रखे हुए है।

और सामने एक और मोटरसाइकल है।